इस चित्र में एक रूम दिख रहा है कुछ लोग बैठे नजर आ रहे हैं कुछ बोटल दिख रहे है वाइट दीवार नजर आ रही है कुछ पंखे दिख रहे हैं ओरेज पर्दा नजर आ रहा है।

इस चित्र में एक झूला दिख रहा है बहुत सारे डंडे नजर आ रहा है कुछ पेड़ दिख रहा है बहुत सारे ग्राउंड नजर आ रहा है बहुत सारी रेत दिख रही है बहुत सारे बच्चे नजर आ रहे हैं।

इस चित्र में बड़ा स्विमिंग पूल दिख रहा है बहुत सारे पेड़ नजर आ रहा है लाल दीवार दिख रहा है ये बहुत सारे पोस्ट नजर आ रहा है लोटस फार्म नजर आ रहा है बहुत सारी बिल्डिंग्स दिख रही हैं।

इस चित्र में एक बड़ी मूर्ति दिख रही है बहुत बड़ी घड़ी ढंगी नजर आ रही है लाल पोस्टर दिख रहा है बहुत सारे पेड़ नजर आ रहा है कुछ लोग जाते दिख रहा है एक बड़ी सी सड़क दिख रही है।

कुछ नजर आ रहे हैं बहुत सारे मिट्टी लगी हुई नजर आ रही है।

इस चित्र में बहुत सारी सब्जी रखी नजर आ रही हैं व्हाइट पोस्टर नजर आ रहा है बहुत सारी गाजर शिमला मिर्च लोकी कद्दू गिलकी--

बहुत सारे चीजें दिख रही हैं।

इस चित्र में एक बिल्डिंग दिख रही है कुछ पेड़ नजर आ रहे हैं वाइट अल्फाबेट दिख रहे हैं गुलाबी हार्ट दिख रहा है।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

इस चित्र में पेट्रोल पंप दिख रहा है दो ट्रक खड़े नजर आ रहा है एक बाइक दिख रहा है ये एक पहाड़ दिख रहा है।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

इस चित्र में एक बहुत बड़ी बिल्डिंग दिख रही है बहुत सारे छोटे छोटे घर ल बने नजर आ रहा है वाइट पन्नी नजर आ रही है कुछ पेड़ लगे दिख रहा है बहुत बड़ा तालाब नजर आ रहा है।

इस चित्र में व्हाइट कलर का एक बहुत बड़ा मंदिर दिख रहा ब्लू शेड नजर आ रहा कुछ लोग जाते देख रहे हैं कुछ पोस्टर नजर आ रहा है एक बड़ा सा पेड़ भी दिख रहा हैं।

इस चित्र में कुछ लोग खड़े दिख रहे जिम की बहुत सारी मशीन दिख रही या बहुत बड़ी जिम दिख रही है।

ब्लैक कलर का बड़ा सा पोस्टर भी लगा दिखा रहा है एक टोबल टंगा नजर आ रहा है।

इस चित्र में बहुत बड़ी बिल्डिंग दिख रही है ब्लू खान नजर आ रहा है रेड दीवा नजर आ रही है ये रेड हार्ट दिख रहा है अल्फाबेट नजर आ रहा है कुछ पेड़ पौधे दिखाई दिख रहे हैं।

इस चित्र में बड़ा मंदिर दिख रहा है येलो पर्दा नजर आ रहा है कुछ फ्लावर्स दिख रहे --

वाइट आसमान नजर आ रहा है कुछ डोरियाँ दिख रही हैं।

ग्रीन दीवार दिख रही है कुछ लोग खड़े नजर आ रहे एक बड़ी सी बिल्डिंग दिख रही है।